यह पूरी एक लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है इधर साइड में भी कुछ बुक्स रखी हुई है पुरा एक रूम है जहाँ पर लाइटे भी लगी हुई है।

और साइड में एक बड़ा सा लाइट का खंभा है और अ बिल्डिंग के पीछे की तरफ बड़ा सा पेड़ भी है पूरा आसमान नज़र आ रहा है।

--पर दो बड़ी सी लाइटे लगी हुई है और इस पूरी ही बिल्डिंग पर सीरीज लगी हुई है और कॉर्नर पर एक छतरी भी लगी हुई है जिसमें कुछ वायरे भी दिख रही है और अ एक बड़ा आसमान भी दिख रहा है।